जो की पिस सेलिंग कर रहै है सामने एक व्यक्ति है जिसने मास्क पहना हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग है कुछ लोग--

ग्रीन है पत्थर पड़े हुए है।

ये फोसु किसी बुक सेल्फ का है जहाँ पे--

पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है।

ए जहाँ पे मेचिंग प्लाजा लिखा हुआ हैं ।

जहाँ पर हरी-भरी घास दिख रही है।